एम_एस टाइ ट्रेडर्स लिखके है ये उसका सामने में दो ठू आदमी बातचीत कर रहे एक दूसरा से--

यहां में अलग अलग कलर ब्लैक वाइट कलर का स्वीट्स सब दिखाई दे रहा है।

और साइड में सैनिटाइजर का बोतल का साथ है।

ड्रेसेस का शॉप है लिवर्स लिखके है।

और इसका मेमोरी का कुछ ओपनिंग सेरेमनी में जब लगता है वो वाला है।

पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

जे एस जायका लिख के है।

एक लड़की दो लड़कीयां आगे चार आदमी है।

यहां पे एक थू हैंडवाश दिखाई दे रहा है और दो इंसान दिखाई दे रहा है।

अनबॉक्सिंग अनबॉक्स बॉक्स भी पड़ा हुआ है तीन ठो सोफा भी ब्लैक कलर का है।

यहां मैं टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

चेयर के ऊपर एक ठो बैग रखा हुआ है।

एक ठो रेस्टोरेंट है तो इसमें बहुत सारा जैसे कि न्यूट्री का बिस्किट दिखाई दे रहा है।

ग्रे कलर ये ब्राउन कलर का पेंट है और एक ठो मिरर है वो दोनों के सामने।

और वैन एक ठो दिखाई दे रहा है।